एक स्टेशनरी की दुकान है जहां कॉपी किताब वगैरह मिलती हैं रबर वगैरह पेन और नीचे एक बॉटल रखी हुई है।

जिसके बीच वाला कारपेट खाली है। बाकी बहुत सारी लेडिस है। कुछ--

कुछ दवाइयां वगैरा है मतलब पेट्स के यहां समान मिलते हैं डॉग का खाना वगैरा मिल जाएगा आपको जानवरों का जानवरों की दवाई मिल जाएगी।

ये कोई रेलवे स्टेशन है जहां पे अ लेफ्ट साइड में ट्रेनें खड़ी हुई हैं दो--

यहां पे रेलवे ट्रैक है रेलवे ट्रैक के बीच में एक महिला क्रॉस कर रही है ऊपर वायर वगैरह गई हैं।

दे रहा है। आपके यहां पे तीन-चार लोग दिखाई देंगे बैंक के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ़ ए_टी_एम है।

जंगलों में हमेशा मोर वगैरह ये सब बहोत अच्छे जानवर है बगल से पाइप जा रहा है।